पेड़-पौधा है | यहाँ यहाँ आदमी लोग फूल रोप रहा है उधर-इधर हरियाली छाया हुआ है पूरा --

बस यहाँ बस लगा हुआ है बस स्टैंड पे है बगल में पेड़-पौधा है बगल में पानी का टंकी है ।

कलर है ब्रश है साबुन सरफ ये सब मिल रहा है किराना का दुकान है।

फूल-उल है गुलाब का है ये सब।

एक स्टैचू बना हुआ है आगे में हरा-भरा घास है नीचे में।

वहाँ गुटका उटका मील रहा है विमल है कमला पसंद है सिग्नेचर है शेंफू है तेल वगेरा ये सब बिक रहा है ।

एक रोड है रास्ता दिया हुआ है जाने का बगल में पेड़-पौधा है बगल में बिल्डिंग है ऊपर में बहुत सारा तार है ।

एक बिल्डिंग है बड़ा सा बगल मे पेड़-पौधा है ।

एक जिम है जिम मे बहुत सारा डमी रखा हुआ है | जिम में बॉडी बनाने के लिए बहुत सारा सामान रखा हुआ है आईना लगा हुआ है बड़ा-बड़ा सा --